एक पीली कलर की भी बिल्डिंग बनी है।

हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं।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

सकी इस पिक्चर मे देख रहे है एम_पी की--

जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं।

यह किसी बहुत बड़ी नर्सरी --

जहाँ अलग-अलग तरीके के फूल गमले लगे हैं।

जैसा कि ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं।

बेकरी की है जहाँ केक सेल हो रहे हैं समोसा कुल्फी सेल होते--

एक साड़ी की शॉप है बहुत बड़ी--

जहाँ हर तरीके के पौधे और फूल बिकते हैं।

ये तस्वीर एक जिम की है जहाँ एक्सरसाइज करने की--

और बिस्किट ले जाते हैं।

पहाड़ी कछुआ की तस्वीर बनी है।

ये किसी हॉस्पिटल की है।

ये तस्वीर नाइट ग्राउंड की है।

इस तस्वीर को छत से लिया गया है।

जैसा कि यह तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं।

जैसा कि ये तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं।

यह तस्वीर किसी जू के मछवा मछुआ--

जैसा कि यह तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं।

हमें इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि सामने एक जोगेंद्र पंजाबी डाबा रेस्टोरेंट है फैमिली वाला--

द स्टूडियो बना हुआ है।

और उसके सामने एक टंकी रखी है।

जो बेचने के लिए रखी गई हैं।